बहोत बड़ा पार्क है।

जहां पर बहोत सारे ऑफिस हैं और यहां पर--

जैसा कि आप देख सकते हैं।

सकते हैं यहां पर एक--

देख सकते हैं यहां पर--

और यहां पर बहुत सारे पेड़ और पौधे लगाए--

तो जैसा कि आप देख--

सकते हैं यहां पर एक--

तो जैसा कि आप देख--

एक बहोत बड़ा फ्लैट ।